एक घड़ी लगी हुई है दो तीन पंखे लगे हुए हैं और इसके ह्म्म्म्म इसका शटर काले रंग का है। इसकी खिडकियाँ काँच की बनी हुई है। यह पीला और गुलाबी बैंगनी रंग का है।

सरियों के जाल लगे हुए है यहाँ पे एक सीढ़ी है एक आदमी फूल पिनो पिरो रहा है एक आदमी फोटो खींच रहा है।

एक बहोत अच्छा मैदान है| यहाँ पे हरियाली बहोत अच्छी है | यहाँ पे झूले भी बड़े बड़े बहुत हैं | एम बी इस गार्डन में दो तीन जानवर घूम रहे हैं दो तीन कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

बहुत ही अच्छी है इसकी जमीन भूरी और हरे रंग की है यहाँ पे है नाई की खेती है इसके आगे गेंहू की खेती इसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे है यहाँ पे जगह-जगह पर खंबे लगे हुए है।

यहाँ पे एक बीचों-बीच में एक नदी है। जिसमें पानी भरा हुआ है। उस नदी के किनारे पे एक नवेया है जो काले और गुला बैंग ह गुलाबी रंग की है।

ए -जो जिसके ऊपर चादर लगी है जो नीले और लाल रंग की है इसके आसपास की बिल्डिंग बहो -बहोत अच्छी हैं यहा पे पेड़ पौधे भी काफी हैं।